गाइस यह सामने में तीन मेट्रो खड़ी हैं एक सफेद रंग की एक काले रंग की एक गुलाबी रंग की है | सामने में दो पेड़ भी लगे हुए हैं और एक इधर गाड़ी खड़ी हुई है और सामने दो मर्द खड़े है।

उसमें टेल्स अ कुछ अलग टाइप की है और सामने एक आदमी भी है और इधर बॉक्स भी रखा हुआ है।

यह सामने एक घर है जिसपे सफेद पैंट हुआ और उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसका रंग सफेद है और यहाँ पे ईटे यहा पे टूटी हुई है दीवार इसमे ईटे पड़ी है ओर यह पे गाइस हरी हरी घासे पड़ी है और ऊपर छत है।

इसमें बाइक ल बाइक भी खड़ी करवालों और बाइक धुलवा सकते हैं बाइक की सर्विस करवा सकते हैं और यहाँं पर एक पोस्टर भी छपा हूआ है जिसने हंबल लिखा हूआ है।